पीछे और भी आदमी बैठे हैं जिम है।

जिम की मशीने हैं।

इस तस्वीर में एक नाई की दुकान है।

और व्हाइट बाहर पेड़ दिख रहे हैं ।

घांस लगी हुई है दूर को बिल्डिंगे दिखाई दे रहीं हैं।

इस तस्वीर में उम्म मछली का बज़ार समझ में आ रहा है।

बहोत भीड़ है बहोत सारे लोग हैं ।

रोड दिखाई दे रही है बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

आ पिंक कलर का है क्रीम कलर का है।

फूलो की माला दिखाई दे रही है।

नीचे एक कपड़ा डला हुआ है गुलाबी --

रोड दिखाई दे रहे है ए --

पेड़ दिखाई दे रहें हैं बड़ा सा बैनर लगा हुआ है।

वहां पर कुछ लोग बैटमिंटन खेल रहे है।

कुर्सियाँ है बैठने की हरी रंग का फर्श है।

इस तस्वीर में बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

के पास गिट्टियाँ दिखाई दे रहीं हैं।

पर्दा लगा है ब्लू रंग का।

ये इस रूम में टेबल लगे हुए हैं ।

टेबल पर बैग रखे हुए हैं दीवार सफेद रंग की है ए.सी. दिखाई दे रही है ।

इस तस्वीर में रोड दिखाई दे रही है।

रोड में गाड़ियाँ चल रही है ऑटो चल रही है।

इस तस्वीर में एक ऑटो दिखाई दे रही है कार दिखाई दे रही है।

पार्क में एक झूला है लाल रंग का --

और मिट्टियाँ रखी मिट्टी रखी हुई हैं।